यह गाय चितकबरी है काले और सफेद रंग की इसके मुँह में हरे रंग की रस्सी बंधी है और सामने टोकरी में घास रखी है।

बास की बल्लिया लगी हुई है जिनसे आगे का कार्य किया जा सकता है ऊपर छत भी बनी है लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है।

ये बच्चे ट्रैकिंग करते हुए करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे है जिनके रास्ते की दोनों ओर लम्बे लम्बे घने वृक्ष लगे हुए है और जमीन पे भी छोटी--

इस फोटो में दिखने वाली सुन्दर सी प्लेट आइसक्रीम की है जिसमें तीन अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम दिखाई दे रही ह है।

देखने में ही यह बहुत स्वादिष्ट और रसीली दिख रही है यह एक मेज पर रखी हुई है जो की किसी को सर्व की गयी है इस प्लेट में दो चम्मचे भी रखी हैं।